ये ए _सी दिख रहा है।

सामने बहुत सारे नल दिख रहे हैं।

सामने छोटे दो गिलास रखे हुए हैं।

महिलाएं सभी साड़ी में हैं साड़ी इंडियन कल्चर के लिए बहुत ही फेमस है।

सामने जो डेकोरेशन है वह फूलों के द्वारा की गई है और फूलों का रंग सारे मिक्स हैं।

सामने एक खिड़की दिख रही है।

सामने एक चेयर भी दिख रहा है।

पोस्ट ऑफिस का बाउंड्री है।

सामने एक बड़ा सा पानी टंकी भी दिख रहा है।

आदमी स्टेयर्स पर खड़े हैं।

एक आदमी गेट पकड़ कड़ खड़ा है।

पेट्रोल लेने का काम कर रहा है।

सामने पेट्रोल मशीन लगी हुई है।

सामने एक दुकान दिख रहा है।

शामने सब्जी की दुकानें हैं जहाँ सब्जी दिए जा रहे हैं।

सामने एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ा सा पार्क दिख रहा है।

बाउंड्री के अंदर कुछ सामान रखे हुए हैं।

मातम दुर्गा की तस्वीर है।

सामने एक बॉटल दिख रहा है।

सामने एक मिठाई की दुकान है।

हमें मिठाई बहुत पसंद है खाने का मन का--

डोमिनोज के अलावा स्विगी में भी मिलता है।

सामने एक किराना दुकान दिख रहा है।

एक ट्रांसफॉर्म दिख रहा है।

सामने कुछ लोग जे_सी_बी के पास खड़े हैं।

एक स्कॉर्पियो जा रही है।

बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

सामने हरे-हरे पौधे हैं।

एक पार्क दिख रहा है।

सामने बहुत से चेयर दिख रहे हैं।

खान खाने की तैयारी चल रही है।

लड़की बैग टांग कर खड़ी है।

सामने बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं।

बैठकर एक साथ लैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

लैंप कागज के बनाने बना रहे हैं।

हॉल में मीटिंग चल रही है।

यहाँ डांस एंड इवेंट्स पार्टी चलते हैं सामने बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

सामने लकड़ी का बाउंड्री दिया हुआ है बाउंड्री के आगे रोड दिख रहा है ।

एक आदमी बैठा हुआ है।

सामने पानी में नाव चल रहा है।

जिसमें स्टोरी लिखा हुआ है।

सामने मैट दिख रहा है।

सामने एक बड़ा सा पानी की टंकी दिख रही है पानी टैंक --

और बड़े-बड़े पौधे हैं।

बाकी सारे जेंस लोग कुर्सी पर ऐसे ही बैठे हैं।

सामने एक म्यूजिक रूम दिख रहा है।

यहाँ ढोलक रखे हुए हैं।

सामने एक ठेला पर बहुत सारा एक कार्टून रखा हुआ है।

नीचे मछली हुई मरी हुई मछली पड़ी हुई है।

सामने एक कुत्ता जाते हुए नजर आ रहा है।

सामने नीचे भी कपड़े की दुकान है।

सामने बहुत सारे घर हैं।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

दुकान में अलग-अलग प्रकार की मिठाइयां दिख रही है।

शादी का फंक्शंस कर रही हैं।

सामने दो जेंस बैठे हुए हैं।

लड़का के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है।

पहाड़ के पीछे बड़ा-बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिख रही है।

छोटा-छोटा घास दिख रहा है।

एक बस नजर आ रहा है।